कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है किनारे साइड में बहुत-सी चीजे दिखाई दे रही है सामने बल्ब दिखाई दे रहे है टीन का सेट दिखाई दे रहा है।

सामने हमें एक बहोत लम्बा सा बड़ा सा लॉन दिखाई दे रहा है ये एक स्कूल का लॉन है।

सामने हमे एक बस स्टैंड का सीन दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहोत सारी बसे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

सामने बहोत सारा दो तीन लोग जाते हुए दिखाई दे रहे है दो गाड़ियाँ खड़ी हुई बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक कार दिखाई दे रही है।

जैसा की सामने हमे दिखाई दे रहा है की एक पन्नी है पन्नी के अंदर बहोत सारे--

साइड में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहाँ कार और गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। दूसरे तरफ में एक दुकान दिखाई दे रही है और बहोत सारे पेड़ भी--

सामने बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है चबूतरे की तरह दिखाई दे रहा है किनारे-किनारे भी कुछ लग रहा है जैसे कुछ लोग खड़े हुए है।

लीची के गुच्छे दिखाई दे रहे है नीचे कैरेट रखा हुआ है कैरेट के ऊपर एक थाली रखी हुई है थाली के ऊपर बहोत सारे--

दरवाजे भी दिखाई दे रहे है।

बहोत रंग- बिरंगी वहाँ पेड़ दिखाई दे रहे है सामने मैदान दिखाई दे रहा है बहोत बड़ी -बड़ी--

पेड़ दिखाई दे रहे है जो देखने में बहोत ही सूंदर एक की तरह दिख रहा--